बिसलेरी का बोतल भी है। वहाँ पे एक आदमी लेट के एक्सरसाइज कर रहा है दूसरा आदमी हेल्प कर रहा है। वहाँ पर शूज भी है।